हम्म मुझे एक हम्म एक बुरसा बनाई हुई दिखाई दे रहा है नीचे नदी सी है सामने एक गोल गोल सडक बना हुआ है उसमे बहुत सारे --

इस इमेज में मुझे एक महाराष्ट्र शासन शासकीय विभागीय ग्रंथालय नागपुर दिखाई दे रहा है लिखा हुआ।

इस इमेज मे मुझे एक दिखाई दे रहे है दिखाई दे रहे है ।

लॅब दिखाई दे रहा है एक लड़की कॉल पे बात करती हुई दिखाई दे रही है एक लडका बैठा हुआ दिखाई--

ऐसी इमेज में मुझे एक नदी दिखाई दे रही है जोर दिखाई दे रहा एक खंबा दिखाई दे रहा एक बिल्डिंग के उपर एक टंकी रखी हुई है और एक टंकी रखी दिखाई दे रहा है ब्लॅक कलर की और एक --

इस इमेज मे मुझे एक आय.सी.आय. बँक दिखाई दे रही और बाजुमे पी.सी. ज्वेलर्स है।